इस फोटो मे एक घर दिखाई दे रहा है जो आधा अधूरा बना हुआ है| इसमे कस्ट्रक्शन का काम जारी है और इस घर के सामने एक मोटरसाइकिल खड़ी है|

सड़क पे ढेर सारे चारपहिये गाड़ियां खड़ी हैं और बाइक्स भी।

ईटा मे है। यह ईंटों से बनी हुई एक कमरा दिखाई दे रहा है। जिसे प्लास्टर नहीं किया गया है।

यह फोटो रेलवे स्टेशन की है। जहाँ पे एक रूम बनाया गया है। रूम के ऊपर लिखा गया है। अरा --

यह फोटो रेलवे स्टेशन की है। पटरी अभी खाली दिखाई दे रही है लेकिन दूर से लाइट जलती हुई एक ट्रेन आती हुई दिखाई दे रही है।

यह फोटो एक पेट्रोल पंप की है जहां से एक सड़क गई हुई है सड़कों पे ढेर सारी कार और ट्रक जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

बैलून का कलर रंग-बिरंगा है और इस कमरे में ढेर सारे बड़े-बड़े लग्जरियस सोफे लगाए गए हैं।

और इस प्लेटफॉर्म के बगल में एक छोटी-सी गुमची बनाई गई है और गुमची भी ढेर सारी बाइक्स खड़े किए गए हैं।